यह प्लेट में स्टील का प्लेट में जलेबी रखा है।

यहाँ पे एक ट्रेन है ट्रेन के अन्दर सब जा रहा है ।

और यहाँ बिजली का खम्भा भी है और तार भी गया है।

पानी का कलर ब्लू लग रहा है और बहुत सुंदर नजारा है।

यहाँ पे एक पराठा है और--

यह क्रिकेट का मैदान है।

और यहाँ पे कोई आदमी नहीं है।

ओं खटाल के उपर पे रखा है और मोबाइल का कवर भी है |

यहाँ पे यहाँ पे कॉफ़ी का मशीन भी है।

यहाँ पे जयमाला वाला माला है।

यहाँ पे पहाड़ पे सीढ़ी बनाया है।

जो तो दो आदमी बेथल है देखते हुवे जा रहा हैऔर यहाँ से सेव संतरा बहोत सारा फल मिलता है।

यहाँ पे रेक पर फल रखा है।